नजर आ रही है जहा पर एक ट्रक खड़ी है यहा जिसमे एक व्यक्ति बेठा है वाइट कलर के की ट्रक है सामने में--